यह एक कोचिंग के अंदर का दृश्य जो कि यहां पे बहुत सारे लकड़ी का मदद से बेंच और टेबल बनाए गए हैं।

और पानी में से बुलबुला छूट भी रहा है और नीचे और ऊपर लाइट जल रहे हैं जो वाइट ।

तथा यहां पे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं जो कि शीशे में और त उसके ऊपर लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक गार्डन का दृश्य जो कि यहां पे गमले में छोटे छोटे बहुत सारे पेड़ पौधे रखे हैं।

था यहां पे लोहे के मदद से रेली अ रेलिंग बनाए गए हैं।

तथा पेड़ पौधे का कलर ग्रीन एंड रेड है और इसपे बहुत सारे फूल भी खिले हुए हैं।

यह एक बैंक का बिल्डिंग का दृश्य है।

सब ने गले में माला पहने हुए है और सिर में भी व्हाइट कलर का ल पहने है तथा नीचे सबके पैर में घुंघरू है और पायल--

कार का कलर है ब्लू और उसमें शीशे भी हैं और अंदर में बहुत सारे बाइक भी लगे हुए हैं।

तथा इस बिल्डिंग के ऊपर लंबे लंबे मीनार भी बनाए गए हैं छोटे छोटे।

ये खिड़की लकड़ी की मदद से बनाए गए हैं और शीशे की मदद से तथा इस बिल्डिंग का कलर येलो है और वाइट ।

जैसे की रेड और पीला और ब्लैक कलर का तथा ऊपर में भी कपटी केक रखा हुआ है।

जोकि जिस पे बैठे वो गद्दा का है और लोहे के नीचे से बनाए गए हैं जो व्हाइट कलर का है।

यह एक रूम का दृश्य तथा यहां पे दो बेड भी रखे हुए हैं।

तथा सामने में एक पर्दा टंगा हुआ है जो कि व्हाइट एंड क्रीम कलर --

यह एक दुकान का दृश्य है तथा यहां पर बहुत सारे आइटम भी पाए जाते हैं जैसे कि पानी और भी कई प्रकार के।

यह एक मैरिज हॉल का दृसय है।

यहां पे एक कार भी लगा हुआ है जो बहुत ही पुराना जमाना का है और वाइट कलर का है।

तथा पीछे में मशीन दिख रहा है जो कि ब्लैक कलर का है और वहां पे व्यक्ति भी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।